बेसिक फंक्शन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस विषय पर दो ट्यूटोरिटल्स में से एक यह है
इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अवगत कराऊँगा कि कैसे अपने फंक्शन इसके रचनाक्रम बनाएँऔर कैसे एक या एक से अधिक वेल्यूमानोंको इनपुट करें
दूसरा ट्यूटोरियल वापस मिलने वाले मानों पर यानि रिटर्निंग वेल्यूज़ पर होगा
अतः चलिए हम इसके साथ शुरूआत करते हैं
मैं यहाँ पर अपने पह्प टैग्स बना रहा हूँ
मैं अपने रचनाक्रम के साथ शुरू करूँगा जोकि फंक्शन है
और फिर फंक्शन का नाम जोकि मायनेम है
यह संभवतः सरल है कि यहाँ पर बड़े अक्षर प्रयोग किये जाएँ
यही वजह है कि आपके पास छोटे अक्षरलोअर केस है फिर बड़े अक्षरों में जाकर फिर से छोटे अक्षरों में आएँ
अंततः नये शब्द बड़े अक्षरों से शुरू होंगे
यह पढने में काफी सरल होता है किन्तु मैं हमेशा ही छोटे अक्षर पसंद करता हूँ
फिर आप दो कोष्ठक प्राप्त करने जा रहे हैं
अभी इनके अंदर कुछ नहीं है
हम यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं ले रहे हैं और अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा
अतः मैं एलेक्स लिखूँगा
अच्छा यदि हम इसे अभी रन करते हैं हम देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ
क्योंकि उसकी वजह से हमने हमारे फंक्शन का विवरण दिया है
किन्तु हमने अभी तक इसे लाया नहीं है
अब अपने फंक्शन को लाने के लिए हमें केवल फंक्शन का नाम 2 कोष्ठक और लाइन टर्मिनेटर लिखना होगा
यदि हम इसमें मान रख रहे हैं जिसे संसाधित करने की आवश्यकता है हम उन्हें यहाँ अन्दर रखेंगे
परन्तु अभी के लिए इसकी फिक्र मत करिये
हम केवल अपने फंक्शन को ला रहे हैं जोकि इस कोड के ब्लाक को कार्यान्वित करेगा
अतः चलिए रिफ्रेश करें और आपको यह मिला
एलेक्स एको हुआ है
अब मान लीजिये यदि मैं 1 लाइन से अधिक के कोड को जोड़ना चाहता हूँ
मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना कोड रख सकता हूँ
यह ब्लॉक यहाँ पर इसीलिए है अधिक नई लाइंस को समायोजित करने के लिए
चलिए इसे अभी जाँचते हैं
हम देख सकते हैं कि इसने काम किया
एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसको खुद से लाने की आवश्यकता नहीं है
इसे कहा जा सकता है उदाहरण के लिए माय नामे इस माय नामे
अच्छा हमें कहना चाहिए कि माय नामे इस और फिर फंक्शन को अलग से एको करें
क्योंकि यह एक मान नहीं है संभवतः इसलिए इसने ठीक से कार्य नहीं किया
यह एक फंक्शन है इसलिए यह पहले से ही एलेक्स को एको करने जा रहा है
अतः नई लाइन को चुनने के लिए यह समान होगा एकोकहकर माय नामे इस एकोecho एलेक्स ठीक है
अतः यदि हम इसे यहाँ रखते हैं यह कार्य नहीं करेगा
उदाहरणस्वरुप आपके पास पूरी तरह से आउटपुट केवल माय नामे इस माय नामे होगाठीक है
अतः चलिए इसे वापस यहाँ नीचे लाते हैं
इसे रिफ्रेश करें और आपको माय नामे इस एलेक्स मिल गया
केवल आपको यकीन दिलाने के लिए कि मुझे कोई शंका नहीं है
यदि मैं इसे एक कोड से बदलूँ जिसका निष्पादन किया जा रहा था यह इस प्रकार दिखेगा
अतः हम यह नहीं करेंगे ठीक है
अतः यह केवल इसको ठीक से समझने के लिए था
अब हम उस तथ्य पर आते हैं कि आप एक फंक्शन को उसके बताये जाने से पहले ही ला सकते हैं
यह इसलिए क्योंकि पह्प इसी प्रकार कार्य करता है
अतः यदि मैं कहता हूँ कि इसे रिफ्रेश करें आप यह अपेक्षा करेंगे क्योंकि फंक्शन विवरण देने से पहले ही लाया जा रहा है
यही कारण है कि यह इसे ऊपर से नीचे को मान्यता देगा
फिर भी यह इस प्रकार कार्य नहीं करता
यदि आप सोचते हैं कि यह अच्छा है तो आप इसे पेज के नीचे भी दे सकते हैं
मैं हमेशा विवरण ऊपर देना ही पसंद करता हूँ ताकि फिर से शुरू कर सकता हूँ या वापस ऊपर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ
किन्तु यह इसके बारे में हैअब इसमें एक मान रखते हैंमैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा यूर नामे इस नामे
यह सामने दर्शाएगा यूर नामे इस और फिर वेरिएबल नामे
मैं फंक्शन का नाम यूरनेम दूँगा
अब वेरिएबल कहाँ से आने वाला है
मैं चाहता हूँ कि उपयोगकर्ता इसको इनपुट देने के सक्षम हो
मेरा मतलब मैं इनपुट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ किन्तु यदि मैं यहाँ पर नामे रखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ यूर नामे एलेक्स
यह ऐसे कार्य करता है
यूरनेम फंक्शन को लाता है इस वेरिएबल को लेता है इस वेरिएबल को नामे में रखता है और फिर एकोसे वेरिएबल को पढ़ता है
यह है जो मैं कहना चाह रहा हूँ
अतः हम मूलतः कह रहे हैं कि यूर नामे एलेक्स
आगे बढ़ने के लिए मुझे इसके लिए एक मान चाहिए खासतौर से एक स्ट्रिंग वेल्यू मान
अतः आप यहाँ तक जाइये और देखिये यदि कुछ भी इनपुट के रूप में डाला गया है
आप देखेंगे कि यह किया गया है
यह एलेक्स है
अतः हमें अब यूर नामे इस एलेक्स मिलना चाहिए
तो हमने कर लिया
हम इसे बिली में बदल सकते हैं
इस प्रकार आपने देखा कि यह कैसे कार्य करता है
ठीक है अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं अपने फंक्शन में यह जोड़ना चाहता हूँ कि आप फलाना वर्ष के हैं
अतः मैं कह सकता हूँ कि यू आरे अगे यर्स ओल्ड हमें कहना होगा नामे और अगे
मूलतः हम क्या करेंगे कि एक दूसरा वेरिएबल जोड़ देंगे
अच्छा तो हम यहाँ अर्धविराम द्वारा विभाजित एक अतिरिक्त चीज़ जोड़ रहे हैं यहाँ पर हमें अर्धविराम द्वारा वेरिएबल्स को अलग करने की आवश्यकता है
अतः यह फिर से इस वेरिएबल को लेता है
इसको यहाँ पर रख रहा है और यहाँ पर एकोecho कर रहा है
इस वेरिएबल को लेते है
इसको लाते है और यहाँ पर इसको एको करता है
मूलतः यह आपके वेरिएबल का स्वरूप है
यह कितने वेरिएबल्स लेता है और इस तरह से आप अपने फंक्शन को कोड करते हैं
अतः चलिए इसको जाँचते हैं
आपको यहाँ पर एक रिक्त स्थान कि आवश्यकता है
मैं इसे पुनः एलेक्स19 में बदल सकता हूँ और रिफ्रेशकरें तो आपको मिल गया
अतः फंक्शन्स समय बचाने के लिए लिखे जाते हैं
यह कोड के बड़े ब्लाक्स को लेता है
यह एक इनपुट ले सकता है
यह इसको इस प्रकार संसाधित करता है कि दूसरे प्रकार से बहुत अधिक समय लेता होगा
इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है
अग्रिम फंक्शन्सजैसे वापस रिटर्निंग वाल्यू के लिए कृपया फंक्शन्स पर दूसरे ट्यूटोरियल को देखें
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर अब आपसे विदा लेता हूँ
देखने के लिए धन्यवाद